बैठे हुए हैं ग्रुप बना बना के यहाँ मैदान में हरी-हरी छोटी-छोटी घास है मैदान के किनारे पे पेड़ हैं जो कि हरे कलर के हैं।

और यहां सामने की दिवार सफेद कलर की है और अगल बगल की दीवार पीली रंग की है।

जिसमें कांच लगा हुआ है कांच पर गुब्बारे से सजाया गया है लाल और सफेद रंग का गुब्बारा और फर्श पर--

और बे बेड के ऊपर पलंग के ऊपर--

यहां इंस्टाग्राम का सिंबल है निशान और उनके अगल बगल में क्यू_आर कोड है।

यहां पे सीमेंटेड रास्ता है और एक सीमेंटेड कुर्सी बनी हुई है।

एक दीवाल है फाउंटेन की जिसपे दोनों बैठे हुए हैं एक लड़की और एक लड़का उन लोग कुछ खा रहे हैं।

और लाइट जल रही है और बड़े बड़े पेड़ है जो कि हरे कलर के हैं।

यहां सफेद रंग का फर्श है टाइल्स लगी हुई हैं।

और एक खिड़की है बड़ी सी जिसका कांच बंद है और उस तरफ मैदान दिखाई दे रहा है।